यह चाय की दुकान है यहाँ पर एक लड़का जो चाय अभी ग्लास में एक हाथ से लेकर के ऊपर से और कुछ उसमें डाल रहे है।

वुमन है जो हाथ में कप लेकर के सीधा देख रहे है और यह बच्चा भी उसके साथ --